यह एक कॉलेज है और यहाँ पर हम --

यहाँ पर बहुत बड़ी नदी है और इस नदी में हम नाव डालकर --

यह एक लाइब्रेरी है जहाँ पर हम संतोष सोहब के साथ पढ़ते हैं और यहाँ पर पढ़ने का हमें बहोत लाभ मिलता है।

यह एक स्टेशन की सीढ़ियाँ हैं जिसपे से हम इस एक स्टेशन से दूसरे तरफ जाते हैं और यहाँ जाकर हम --

जहां पर ये लेडीज नृत्य कर रही हैं वह एक बहोत बड़ी स्टेट है।